पीछे भी बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बाल्टियां रखी हुई है और सामने कुछ केनिया भी पड़ी हुई है।

एक बड़ा सा पतिला पड़ा हुआ है।

पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।

और बिजली की तारे भी दिख रही हैं।

सामने एक मंदिर है मंदिर के बाहर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

सामने अंडे भी रखे हुए हैं छत पर पं--